और इवनिंग में बहुत ही प्यारा नजारा होता है आप इवनिंग में अपने फ्रेंड्स और फॅमिली के साथ जाके --

चाहे फॅमिली के साथ जा सकते हैं यह यहाँ जाकर हम अच्छी अच्छी फ़ोटो भी क्लिक कर सकते हैं यह बहुत ही प्यारा लग रहा है।

बहुत ही अच्छा नज़ारा है एक गोशाला का उनके बच्चे भी बहुत ही प्यारे लग रहे हैं।

तैरने भी आया करते हैं यहाँ बहुत सारे गेम्स खेले जाते हैं ये ग्राउंड बहुत ही प्यारा और सुंदर है यह ग्राउंड बहुत ही बड़ा ग्राउंड है।

यहाँ बहुत से छोटे छोटे बड़े बड़े पोधे भी हैं यहाँ बहुत से जानवर --